सिलाई के लिए यहां पर कपड़े मिल जाते हैं एक मॉल टाइप का है अच्छा सा सारी चीजे कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पर कुछ लोग कपड़े खरीद रहे हैं यहां पर।

ये एक तीन मंजिल की बिल्डिंग है जिसके नीचे कपड़े की शॉप है और काफी अच्छी शॉप है बाहर एक स्टैचू लगा हुआ है।

ये एक मंदिर है जिसमें दो मूर्तियां रखी हुई हैं। पूजा का सामान रखा हुआ है।

ये एक लाल कलर का फूल है बड़ा अच्छा --

छोटी- मोटी चीज़े मिल जाती हैं | बिस्कुट वागेरा नमकीन वागेरा शैंपू वैमपु मसाले-वसाले खाने पीने की छोटी मोटी चीज़े यहां पे मिल जाती हैं ।

भगवान श्री कृष्ण की और राधा जी की हम पूजा करती हैं। म् मंदिर में इनकी मूर्ति भी रखती हैं और उनकी पूजा करती हैं हम --